कपड़े हैंग किए हुए हैं जैसे शेरवानी गोल्डन और सिल्वर कलर --

जिसमें बीच में फूलों से कुछ सजा के रखा हुआ है।

साइड में लड़कियों ने साड़ियां और लहंगे पहने हुए हैं।